पहाड़ के पास में रोड पे खड़ी हुई है वाईट कलर की है काफी सुन्दर सी है टोयोटा कंपनी की लग रही है और गाड़ी कई जा रही है।